गार्डन है और आगे की तरफ स्कूल है शायद से यह घर है और बराबर में पेड़ है आगे भी पेड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर व्यू आ रहा यहाँ से अच्छा वाला --

आगे की तरफ एक रोड है आगे की तरफ एक बाइक वाला है टेम्पो है और कार भी है और बराबर मे कार भी खड़ी हुई है और टावर बहुत सारे यहाँ पर --

एक तो इतना बड़ा होटल है ये और बराबर मे कपड़े कच्छा बनियान टांग रखा है और अच्छा लग रहा है ये --

से सजा रखा है हैप्पी बर्थ्डै से और-और इतना गुब्बारे भी डिजाइन कलर के लगा रखे हैं और राइट में लड़कियां तीन लड़कियां खड़ी हुई है और लेफ्ट मे दो-दो तीन लड़के खड़े हुए है।